कार्टून भी रखा हुआ है।

और जंगल में है ये नदी।

और पेंडल का अंदर है सब लोग।

पैंडल का काला सफेद कपड़ा से बनाया हुआ है।

और इसमें एक और गेट है।

और घर का आगे दो स्कूटी रखा गया है।

स्कूटी का कलर एक रेड है और एक ब्लैक ।

और बैंक का वॉल जो सफेद कलर से पेंट किया गया है।

ये फोटो एक पार्टी या फंक्शन का है।